घर सेंटरिंग हो रही है लेबर मिस्त्री पाटा से सेंटरिंग कर रहे हैं छड़ बांध रहे हैं घर का मालिक यहाँ पे खड़ा है और बहुत सारे लेबर मिस्त्री बहुत सी मेहनत से काम कर रहे हैं ।

यहाँ पे तीन मूर्ति है भगवान जी की मूर्ति है यहाँ पे पुजारी जी पूजा कर रहे हैं ।

मंदिर में बहुत सारे फूल चढ़ाये गए हैं मंदिर में बहुत सारे लोग पूजा करने के लिए आते है पूजा करते है प्रसादी चढ़ाते है अपनी मन्नत मांगते --

अनमोल होटल है यहाँ पे दही घी पनीर रसगुल्ला गुलाबजामुन --

मिलते हैं सभी लोग यहाँ पे खरीदनें के लिए आते हैं । यह होटल के बाहर तीन-चार बच्चें खड़ी है । यह पुलिस के यूनिफार्म बच्चें पहने हुए --